बगल में हरे कलर की दर्री भी बिछी हुई हैं।

सामने कुर्सी और टेबल रखा हुआ है।

अगल बगल में बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं।

एक गोली के ऊपर सिर में कढ़ाई है।

चावल है पनीर दाल और सब मिक्स सब्जी और थोड़े सलाद--

पीछे मिट्टी भी नजर आ रही है।

जोकि लोहे से बनी हुई जालियों से गिरा हुआ है जाली का रंग हरा कलर का है ।

लोहे की मदद से रेक बनी हुई है जिसमें सारा सामान रखा हुआ है ।

सामने कॉर्नफ्लेक्स रस्क ओर तथा बहुत सी चीजें रखी हुई है।

सामने एक फ्रिज भी रखा हुआ हैं।

जमीन में मिट्टी भी है सामने एक दरवाजा भी है।

तीन लोग भी खड़े दिख रहे हैं बिल्डिंग का रंग सादे रंग है जिसके ऊपर बजाज लिखा हुआ है।

यह किसी जगह का चित्र है सामने एक पीले कलर का टेंपो दिख रहा है।

एक आदमी का हाथ और सेल्फी स्टिक दिख रहा है।

उसका रंग सादा है सीलिंग का रंग भी सादा है जिसमें भिन्न प्रकार की लाइटे भी लगी हुई है।

सामने एक रोड भी हैं गेट के पास कुछ लोग खड़े हैं।

भी औरतें अपने सरों में दुपट्टा ली हुई हैं।

सामने एक पहाड़ है जिसके ऊपर वह आदमी खड़ा हुआ है बहोत सारे पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

कुछ जगह जमीन का भीगा हुआ भी है।

यह एक एयरपोर्ट का चित्र है सामने एक एरोप्लेन खड़ा है जिसका रंग लाल और सादे कलर का है।